एक ब्यक्ति काले रंग के कपड़े और दूसरा ब्यक्ति पीली टीशर्ट पहना हुआ है पीछे भी सजावट है एक महिला और एक बच्चे दिखाई दे रहा हैं।

ऊपर से दिए गए चित्र दूर की तरफ से अन्द आगे बहता पानी और कोई वय--

कुछ व्यक्ति कुर्सियों पर बैठे हुए है कोई खड़े है लाल रंग कुर्सि हैं और हरा कारपेट है।

ऊपर बहता झरना बहुत सुन्दर दिखाई दे रहा हैं पहाड़ की तरफ ऊपर दो व्यक्ति बैठे हुए हैं।

यह चित्र वाटर पार्क का दिखाई दे रहा है इस में चलने वाली स्लाइड लगी हुए है जो ऊपर से बहेती हुए आ रही है स्लाइड मे से बहेता पानी नजर आ रहा हैं जो बोहोत--

इस चित्र में बहुत सारी कुर्सीयां टेबल रखी दिखाई दे रही है।

इस चित्र मे एक बड़ा टावर दिखाई दे रहा है जो बोहोत सुंदर लग रहा है पुराने बक्त का ये टावर जिसके बीच मे घड़ी लागी हुई है आस पास मे पौधे नजर आ रहे है।

चित्र में एक सुन्दर मोर अपने पूरे पंख फैलाए हुए है और पंख में ये कलर बहुत सुन्दर लग रहे है यह चित्र बहुत सुंदर है।